एक व्यक्ति उसके सामने से निकल रहा है तो लेडीज है अंदर रो रही है चर्च सामने पेड़ -पौधे हैं चर्च के पीछे भी लाइटिंग लगी हुई है चारो साइड से सजा हुआ हैं।